और पास में कुछ छोटी-छोटी पत्थरों से कुछ बनाया हुआ है ब्लैक कलर और येलो कलर --

घर के आगे एक बहोत बड़ा खंबा है लाइट वाला और खंबे के पास में एक बहोत बड़ा पेड़ है।

गाड़ियों के पीछे दिखाई दे रहा है कि कुछ पेड़ उगे हुए हैं अं लाइट वाले तार निकल रहे हैं ऊपर से--

और पीछे दीवार के ऊपर और भी कुछ चार्ट बने हुए हैं।